ये एक दुकान है एण्ड दुकान के बगल में एक पिंक टी-शर्ट में लड़का खड़ा हुआ है पास में बाइक भी है उसके पास में कार है और ऊपर आसमान है।

लड़के हैं और एक लड़का शायद से कुछ खरीद रहा है।

उसके बाद जेबड़ा क्रोसिंग लग लाइन लगा हुआ है औड़ उसके बगल में बहोत साड़ी पेर हैं और दायें तरफ भी बहोत सारे पेर हैं।

यहाँ पर बहुत सारी चेयर हैं चेयर में बहुत सारी लोग बैठे हुए हैं और इस-आ बहुत सारे लोग कुछ सामने को देख रहा हैं।

एक लड़का ब्लेज़र पहना हुआ है और उसके बगल में एक लड़की खड़ी है जो की उसका वाइफ है ये एक शादी का पेंडल लग रहा है।